एक हाथ से लहँगा पकड़ी एक हाथ उसका पीछे की ओर जा रहा है बोर्ड लगा हुआ दिख रहा है।

का लाइट लगी दिख रही है इसमे नीला कलर की लाइन खिंची हुई दिख रही है ये आलमारी दिख रही है आलमारी मे बहुत सारे कपड़े रखे दिख रहे है।

दिख रहे है बादल मे जामुनी कलर दिख रहा है नीला दिख रहा है व्हाइट कलर दिख रहा है --

दिख रहा है पेड़-पौधे दिख रहे हैं ग्रीन कलर के हल्का पीले कलर दिख रहा है सूखे पेड़ें भी दिख रहे हैं रोड पे एक पिंक कलर भी दिख रहा है एक लड़का खड़ा हुआ दिख रहा है।

कपड़ों की दुकान दिख रही है बहुत सारे पुतले रखे हुए दिख रहें हैं जीन्स टॉप लेगी कुर्ती पहने हुई दिख रहें हैं फोटोज --

दी हुई दिख रहे हैं बोर्ड लगे हुए दिख रहे हैं वी टू का नाम लिखा हुआ दिख रहे हैं नीचे बहुत सारे जेंट्स खड़े हुए दिख रहे हैं लेडिजें दिख रही हैं कांच के गेट दिख रहे हैं उनमें भी --

बगल जंगल टाइप का दिख रहा है पहाड़ वगैरा दिख रहे है व्हाइट कलर के पत्थर दिख रहे है वा --